यहां पर एक मॉल है वी तु ।

सेल्फ टाइप के बने हैं लकड़ी के काबड़ है वो उसमें बहुत मसाले मसाले रखे हुए है।

और बैठने की व्यवस्था भी दिखाई दे रही है।

और मिरर रखा हुआ है सामने--

यहां पर पूल के लिए और बलून से डेकोरेशन भी है।

बाकी सब लड़के लड़को लड़के को खेलता हुआ देख रहे है।

एक ब्लैक कलर की चेयर और ब्राउन कलर का टेबल है।

ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है बहुत पक्का बन गया है।

टाइप की कर रहे हैं और यहां पर बेंच कुर्सी पर बिठाया गया है।

गुलाबी कलर के पैकेट है जिसका प्राइज थ्री सेवन्टी फाइव है।

यहां पर एक सूखा हुआ पेड़ लगा हुआ है।

यहां नीचे चादरों का मकान बना है।

ये एक ऑफिस बना हुआ है यहां पर छह सात लाइट लगी हुई है पीओपी वाली।

दो हाथ में बैठकर डिस्कशन --

यहां पर शेड डला हुआ हैपानी--

गिरा हु यहां पर बादल लगे हुए हैं।

यहां पर स्कूल का सामान मिल रहा है।

पब्लिक दिख रही है कुछ चेयर पर भी बैठे हैं।

विरोधी कलर का कुर्ता पहने हैंआदमी--